पैर में जूते पहने है हाथ में भी जूते पहने हैं।

बहुत सारे गाय स गाय हैं जो स चर रहे हैं ।

दो-तीन आदमी बाहर खड़े हुए हैं ।

और एक्सिस बैंक के ऊपर मे भी कुछ पोस्टर वोस्टर मारे हुए हैं। ।

ये कोई शायद गेट नंबर थ्री है क्या है।